बिजली के खंबो से तार निकल रहे है बिल्डिंग से एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

यहाँ एक मकान है मकान के निचे कई सारी शॉप है शॉप के बहार मो-टरसाइकल खड़ी हुई है।